एक टाउन दिख रहा है छोट-छोटे पौधे है बिजली का खम्भा है आसपास में बोहोत सारी लाइट दिख रही --